ये एक बड़ा-सा खेत है देख सकते है और खम्भा लगाया हुआ है बड़ा-बड़ा और साइड में फ़सल लगाई गई है पीछे जंगल है।

उसके बाद एक लाइन का तार भी बड़ा-सा दो पोल में खीचा हुआ है और गड्डे खोदे हुए है और उसके बाद सामने हरा-भरा दिख रहा है।

और पेंटिंग कि हुई हैएक छोटा बच्चा है साइड में उसके बाद--